दिखाई दे रही है जो की बहोत ही पुरानी नज़र आ रही है।

पे एक आदमी ने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।